ऐ रोड किनारे चाय चो दुकान आय कुर्सी मन लगलिसे टेबल मन--

एमे कैन्डल वाली लाइट लगलीसे ये हॉटल हरा- हरा दिखेसे तार लगलीसे लाइट मन जलेसे।